कुछ मछलिया येल्लो कलर की केरेट में रखी हुई है और कुछ मछलिया ब्लू कलर की केरेट में रखी हुई हैं और पीछे की तरफ सफ़ेद कलर की लाइट दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर बहुत बड़ी हरे कलर की एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और बहुत सारे लोग भी यहाँ पर एकत्रित हुए है।

यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है और बाइक भी खड़ी हुई है पीछे की तरफ बस भी खड़ी हुई है और कुछ दुकाने भी दिखाई दे रही है और ऊपर की तरफ बिजली के तार भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है उन लोगो के पीछे एक टेम्पल भी लगा हुआ हैं।

और यहाँ पर सफ़ेद कलर की चार बल्ब दिखाई दे रहे है एक लोग ब्लैक कलर का कुरता पहन के खड़े हुए है और ये मछलियाँ बेच रहे है।

यहाँ पर एक शॉप दिखाई दे रही है और वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ रखी हुई है और वहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं।

जे और उस बलून की आगे की तरफ एक लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर सफ़ेद कलर की टाइल्स भी दिखाई दे रही हैं पीछे की दीवार जो हैं वो भी सफ़ेद कलर की दिखाई दे रही हैं।